और मुझे बहुत सारे पेड़ दिख रहे हैं कुछ पेड़ झड़े हुए भी हैं और कुछ--

यहाँ पर मुझे एक ब्लू कलर का जेसीबी का खिलौना जैसा कुछ दिख रहा है।

मुझे दो बड़े पोस्टर दिख रहे है जो रंग बिरंगे है मुझे एक बालू का ढेर दिख रहा है।

उस पर झंडा लगा हुआ है किसी तरह का एक कार दिख रहा है जो ग्रे कलर का है।

यहां पर मुझे एक बड़ा सा मशीन का दुकान दिख रहा है जो की बहोत बड़ा है।

और एंट्रेंस से होकर जाते हुए मुझे बहुत सारे पौधे दिख रहे हैं जो रास्ते के साइड पर लगे हुए हैं।

यहां पर मुझे एक बड़ा सा शोरूम नजर आ रहा है जो बाइक और स्कूटी का शोरूम है।

यहाँ पर मुझे एक बड़ा सा स्वीट का दुकान दिख रहा है और कांच के बड़े-बड़े काउंटर दिख रहे हैं।